और आगे एक जानवर है कोई ।

बहुत ही पुराना खंडर है बाउंड्री हेय इ।

और मस्जिद के गेट जो है बहुत बड़ा है।

उधर भी एक खंडर है।

और चारों साइड जो है पेड़ लगा हुआ है अच्छा-अच्छा।

यह जो है एक लिवर पूल है।

और यहाँ लोगों के टहलने के लिए रास्ता बना हुआ है। टाइल्स लगा हुआ है उसपे ।

कुछ लिखा हुआ है इसमें गाजीपुर जंक्शन ऐसे कुछ --

बाहर जो है चद्रा का का गेट बना हुआ है छोटा-छोटा --

पीला-पीला पेंट किया हुआ है।